उस शीशो के ऊपर लकड़ी के ऊपर बल्ब लगे हुए हैं काफी सारे लाइट जल रही है।

और नीचे मेज है बराबर में सीट है लाइट जल रही है लड़की--

ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें काफी बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं बीच में--

और एक फोटो है और ब्लू कलर का पन्नी है.

के ऊपर दो पंखे हैं सामने खिड़की है उसके ऊपर पर्दे लटके हुए हैं काफी सारी मेज कुर्सी है उसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं सामने एक आदमी स्पीच दे रहा है.

सामने मेज है एक आदमी कुछ पढ़ रहा है।

पानी भरा हुआ है पाइप नीचे रखा हुआ है।

ये जंगल है जिसमें दो हिरन है हिरन है हिरण के बच्चा है.

ये एक दुकान है जिसके ऊपर टेप रखा हुआ है। एक टेबल है जिसमें काफी सारी ड्रॉ है सामने स्टूल है।

दो कमरे हैं इस पे पर्दे लटक रहे हैं दो काफी सारी कुर्सियां हैं.

आस-पास काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं.

उसमें दीवार पे एक पोस्टर लिखा हुआ है स्लीपर जिम आर.

काफी सारे टायर के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं लाइट जल रही है.

ये सामने बच्ची खड़ी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके.

कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं एक सर पे हाथ रख के--

और सामने कांच की मेज़ है उसके अंदर भी कुछ समान है एक लेडीज़ खड़ी हुई है लाइटें जल रही है।

बोर्ड लगे हुए हैं काफी सारे इसमें.

रिसाइनेंस लैब है डॉक्टर लैब है.

ये घास हैं खुला हुआ खुली हुई जगह है नीचे जमीन पे हेल्मेट रखा हुआ एक बाइक है आसपास पेड़ पौधे हैं सामने बादल है।

हरी घास है रंग नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं.

ये कोई शादी का हॉल है ऊपर सारी रोडें लगी हैं।

स्टेज है सामने काफी सारी लाइटे लगी हुई है काफी सारी कुर्सियां है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे सामने लाइट्स है बैलून है फूल है।

ये जंगल है बीच में गले सी रोड सी गई है उसके आसपास काफी सारे पेड़ पौधे हैं.

कुछ फूल है कुछ पौधे हैं कुछ सूखी जड़े हैं बीच में रोड गई हुई है.

उम्म पोस्टर लगे हुए आस पास अ बीच पास में खंबे हैं खंबे के ऊपर तारे है पीला गेट है।

ये कोई जगह इसके सामने दो तीन गेट है काले कलर के एक आदमी खड़ा हुआ है पीले कलर का अं बंपर है कुछ--

प्लास्टिक का है। सामने पोस्टर लगा हुआ है उस पे ट्रक लग पुका पोस्टर है। एस_टि_सी लगा हुआ हैं।

यह सामने छप्पर है इसमें दो-तीन ऑटो.

रंग-बिरंगी कहां से हैं सामने होल सा उसमें जा.

ये पहाड़े हैं पहाड़ के बीच में रास्ता दी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है जूते ब्लू पेंट जैकेट और.

अ दिए वाले में जल रही काफी सारी कैंडल्स तार है.

सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं लाइटें जल रही है अन्दर बाथरूम है।

ये कुछ लोहे की सीड्स ही हैं काफी सारी.

काफी सारी लोहे की सरियां लगी हुई हैं.

ये मेज के ऊपर कोई मशीन है जिसपे एक आदमी काम कर रहा है उसके आस पास काफी सारे--

कर्मचारी कि सारे लेबर्स को दिखा रहा है.

सामने पोस्टर और टी_वी लगा हुआ है काफी सारे लाइटें जल रही हैं बीच में ए_सी है।

ये एक दुकान है जिसमें काफी सारी किताबें हैं काफी सारी ड्रोस अलमारियां हैं उसमें किताबें रखी हुई हैं दो पंखे हैं लाइट जल रही है.

यह कोई जगह है इसमें काफी सारे फूल रंग बिरंगे फूल हैं पौधे हैं एक तार जा रहा है लिखा हुआ है इसके ऊपर और.

न्यूजीलैंड तीन खंबे से हैं सामने गेट है.

एक बीच में कार है सही हो रही है.

नीचे लाइट दिख रही है गाड़ी खड़ी हुई है.